एक मछली टोय की दुकान दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हम लोगों को एक एरोप्लेन दिखाई दे रही है।

जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसमें कुछ पंख लगे हुए है लाइट लगे हुए है।

इसमें बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं। मे

सामने इसमें लिखा हुआ है शादी का गार्डन --

बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू ब्लैक टी-शर्ट पर एक नीचे खड़ा हुआ है।

इसमें पेंट किया गया है वाइट कलर से पेंट किया गया है।

इस इमेज में ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रही है।

गमला रखा हुआ है बीच में--

एक मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

एक नाव दिखाई दे रही है।

तार दिखाई दे रहा है एक पेपर लगा हुआ है ऊपर हमको एक --

टी-शर्ट पहने हुए है लोग बाग दो तीन कुर्सी रखी हुई है दो काँच लगे हुए है इसमें बहुत समान रखा हुआ है।

इस सलून में हमें एक चर्च की फ्रेम दिखाई दे रही है।

यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई की गई है। देखने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो।

इस इमेज में हम लोगों को एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका चड्डा पेहने और कैप लगाए हुए बैठा हुआ है।